यहाँ लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सावधानी से काम कर रहे हैं। ये मजदूर हैं। पानी का पाइप भी पड़ा हुआ है। काम करते हैं। इन्हें अपने दिन के रुपये मिलते हैं।

और यहाँ पर रेल की पटरियाँ भी हैं।

यो पार्क हैं।

यहाँ शादियाँ होती हैं। तब जयमाला वर वधू को पहनाई जाती है। वो मालाएं मिलती हैं।

यहाँ पर अपनी नौकरियां के लिए पूरी पढ़ाई करने के बाद अपना कोर्स करते हैं डिप्लोमा करते हैं। इससे अपना भविष्य बनाते हैं। ये बहुत अच्छा स्कूल है। ये पार्क है।

यहाँ आसानी से पैसे निकल आते हैं। सिर्फ ए.टी.एम. कार्ड डालें अपने पैसे निकालें। बहुत सुंदर ये अच्छा तरीका है।

इसके अंदर कुछ वी विद्या वाला कुछ है। कंप्युटर वाली दुकान है। यहाँ पर कोचिंग सेंटर है कंप्युटर का है लैपटॉप का है।

यहँ एंट्री होती है यसी गेट से। इसी गेट से निकलते भी होंगे टू लेट भी हो जाते --

जिम करके मेहनत करके खा-पी करके इन्होंने बॉडी बनाई है। यहाँ पर जिम बॉक्स है। यहाँ पर ये अपनी शरीर को मजबूत करते हैं। बोहोत सुंदर है यहाँ पर --

ताकतवर बनते हैं। ये काम कर --